यहां पर हमें दिख रहा है एक बड़ा सा हॉल जहां पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

यहां पर कांच का सामान बहुत सारा है झूमर लगे हुए हैं लाइट लगी हुई है एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

नल लगा हुआ है क्या कहते हैं टोटी लगी हुई है।

और लाइट लगी हुई है राड लगी हुई है।

औरर मशीने लगी हुइ हैं।

और यहां पर एक साइड में दीवार बनी हुई है।

और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां एक बहुत बड़ा छत है।

और स्टॉल पड़ा हुआ है उसपे कुछ रखा हुआ है बोतल टाइप --

भैया हमें यहां पर दिख रहा है शादी का मंडप।

बगल में है एक लेडीज माता खड़ी हैं एक भैया खड़े हैं।

यहां पर लाइट लगी हुई हैं बहुत सारी--

और हरे कलर के हैं और नीचे एक नीला कलर गुलाबी है।

पन्नी में है और बाहर भी रखा हुआ है तेल की बोतल रखी हुई है।

एक भाई साहब आराम से बैठे हुए हैं।

एक भाई साहब खड़े हुए हैं एक भाई साहब निहूरे हैं।

जिसके सामने बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं उधर उस प--

भाई साहब टोपी लगाए हुए कुछ लोग खड़े हुए हैं।

ये गमला रखा है जिसमें पेंट लगा हुआ है बेत का--

और इधर कांच का गिलास मूर्ति के अंदर बना हुआ है लाइटें जल रही--

कुछ लोग टहल रहे हैं इधर-उधर कुछ लोग देख रहे हैं पंडाल लगा हुआ --

यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां एक --

और गत्ते रखे हुए हैं लाइट लगी हुई है रोज लिखा हुआ है यहां पर ये देख पा रहे हैं।

यहां पर हम देख पा रहे हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं और--